और मुझे लाल लाल और भी नजर आ रहे हैं अच्छे साउंड लग रहे हैं स्पीकर के ब्लैक कलर नजर आ रहे हैं।

ये करनी माता का मंदिर है जो की देशनोक में है इसमें ये श्रद्धालु आए हैं दर्शज करने।

पर साइड में काली माता की तस्वीर नजर आ रही हैं ये हमारे में पड़ता है।

इधर साइड में ही पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है दैनिक भास्कर और इधर--

अनेक शॉप नजर आ रही हैं और ये अच्छा व्हाइट कलर का पेंट किया नजर आ रहा है इस तस्वीर में--

इस तस्वीर में ये रेलवे प्लेटफार्म लग रहा है इसमें रेलगाड़ी नजर आ रही हैं और ये अच्छा ट्रेन सेट आ रहा है इस तस्वीर में।

ये कोई मंदिर है इस मंदिर के ऊपर दो तरह की लाइटिंग की गयी है।

इस फोटो में एक मंदिर है मंदिर हनुमान जी का लग रहा है साइड में एक कैंपर पड़ा नजर आ रहा है।